काफी सारी फ्लेक्स लगी हुई है।

ये तीनो पास्टर बाइबल पढ़ रहे है।

बुलेट के ऊपर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है।

ये दोनों आदमी इकट्ठे बात कर--

टॅंड की तस्वीर है।

ये मार्केट के सामने फ्रूट की--

कॉफी ठेका के बाहर खड़ें हैं।

कलर के हैं इनके बीच--